यहाँ पर पर कुछ लिखा हुआ है और तीन तीन चार पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक मठी दिखाई दे रही है और हरे रंग का और हरे रंग का गेट भी दिखाई दे रहा है ।

बाल कटवाए हैं और पीछे एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है और उसके पीछे दीवार पर गीजर लटकाया हुआ नजर आ रहा है।

और ए दूसरी ओर सड़क के दूसरी ओर एक व्यक्ति और एक महिला और बच्चा दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक पाठशाला दिखाई दे रही है पाठशाला में कई सारे बच्चे योगा कर रहे हैं।

सारे लड़कियां हैं और उन्होंने मास्क भी पहना हुआ है और एक मैट भी नीचे डाला हुआ है।

यहां पर एक होटल नजर आ रहा है होटल पर कई सारे लोग भी बैठे हुए हैं।

मेज़ पर पेटीऍम और गूगल पे का कार्ड दिखाई दे रहा है।

उनका चेहरा धुमला है और यहां पर जूतों और फैंसी --